और इधर मतलब की स्कूल टाइप लग रहा है बड़ा बहुत बड़ा स्कूल और मैडम भी यहाँ खड़ी हैं और मतलब की बहुत बड़ा स्कूल टाइप लग रहा औ ब्रिज भी है बना रही है।

छोटी छोटी बच्चियां डिज़ाइन बना रही है पेंसिल कटर कैंची सब चीज़ लेकर लड़कियां बना रहीं हैं।